content management in admin interface पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम drupal interface का अन्वेषण करेंगे
हम कुछ menu items जैसे content structure और appearance के बारे में भी सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
आप अपनी पसंद का कोई भी web browser उपयोग कर सकते हैं
अब हम अपनी website खोलते हैं जो हमने पहले बनाई
drupal interface का विस्तार में अन्वेषण करने से पहले मैं कुछ वास्तव में महत्वपूर्ण आइटम्स को highlight करती हूँ
याद रखेंक्योंकि हम drupal site का setup करते हैं हम यूज़र number 1 या super यूज़र हैं
drupal में super यूज़र अन्य users से ऊपर होता है हम कुछ अन्य प्रबंधकों का भी सेटअप कर सकते हैं जो भविष्य में सारी अनुमतियाँ रखेंगे
लेकिन वो अनुमतियाँ super यूज़र द्वारा हटाई या प्रबंधित की जा सकती हैं
super यूज़र की अनुमति कभी नहीं हटाई जा सकती
दूसरे शब्दों में super यूज़र drupal site के प्रत्येक क्षेत्र का access रखता है
याद रखेंयूज़र number 1 किसी भी drupal site का super यूज़र होता है
यह administrative toolbar है
जब हम manage पर click करते हैं तो हम menu पर ले जाये जाते हैं यहाँ हम content structure appearance आदि देख सकते हैं और हम उन्हें थोड़ी देर में देखेंगे
यदि हम shortcuts पर click करते हैं तो यहाँ shortcuts tool bar है दोबारा हम इसे कुछ समय में देखेंगे
जब हम admin पर click करते हैं तो हम अपनी खुद की profile या log out के links देख सकते हैं
tool bar में यह admin कहलाता है क्योंकि यह वो यूज़रनेम है जो मैंने प्रविष्ट किया है आपका अलग भी हो सकते हैं
एक बार फिर यह administration toolbar है और यह हमारे drupal administration अनुभव का महत्वपूर्ण भाग है
यह shortcut bar पर कुछ जोड़ने के लिए बिल्कुल सरल है
उदाहरण के लिएमानिये मैं manage content>> add content में हूँ
और मैं अपनी website पर article जोड़ना चाहती हूँ यहाँ एक star पर ध्यान दें वह भरा हुआ नहीं है
star पर क्लिक करके मैं इसे shortcuts पर जोड़ सकती हूँ
अब यदि हम shortcuts पर click करते हैं तो हम shortcuts में create article menu item देखेंगे
और हम इसे आसानी से हटा सकते हैं जब हम articles बना चुके हों
यह हमारी drupal site पर वस्तुतः किसी भी administration screen से किया जा सकता है shortcuts इसे चारों तरफ घुमाने के लिए वास्तव में तेज़ बनाते हैं
अब मैं appearance पर click करती हूँ ध्यान दें वहाँ tabs हैं और इस प्रकार के tabs पूरी site पर दिखेंगे
ये tabs महत्वपूर्ण हैं और ये section tabs कहलाते हैं
हम जिस भी screen पर कार्य कर रहे होंगे वे उसके भिन्नभिन्न sections पर देखते हैं
कभीकभी ये sections subsection button रखते हैं जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं
global settings bartik classy और seven settings टैब के subsection buttons हैं
अंततः प्रत्येक drupal content item एक node कहलाता है
अभी तक हमारे पास हमारी site पर कोई भी nodes या content नहीं है
हम उनको आगे आने वाले tutorials में बनाएंगे
administration toolbar submenu section tabs और subsection buttons
ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रुरत है जैसेजैसे हम drupal interface पर जाते हैं
अब अपने toolbar पर content link को देखते हैं
जब हम content पर click करते हैं तो हम dashboard पर lays जाये जाते हैं dashboard site पर सारी विषय वस्तु को बताता है
हम published या unpublished करके filter कर सकते हैं हम content type के द्वारा भी filter कर सकते हैं या हम कोई भी title ढूँढ कर और कोई भी language चुनकर कर सकते हैं
चूँकि अभी तक हमारे पास विषय वस्तु नहीं है यह पेज थोड़ा सा सीमित है
यदि हम यहाँ subtabs पर click करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अब तक कोई comments नहीं है
और यदि हम word files पर click करते हैं तो हमें उन सारी files की एक सूची मिलेगी जो अब तक uploaded की जा चुकी हैं
ये एक image या file के किसी प्रकार में से कोई भी हो सकता है हम उन्हें बाद में सीखेंगे
add add content पर click करते हैं और अपने homepage पर एक welcome article जोड़ते हैं
article पर click करें अब welcome to drupalville पर click करते हैं
हमारी site का name drupalville है और यह drupal के बारे में सब प्रकार की जानकारी देने वाली है
body में हम type करेंगेwelcome to our site! we are so glad you stopped by!
अब हम इन सारे क्षेत्रों में नहीं जायेंगे हम वह आगे के tutorials में cover करेंगे
लेकिन tags में हम टाइप करेंगे welcome drupal
यह सारे articles की सूची पर links बनाएगा जो हम इन tags को देते हैं
हम यहाँ एक image भी upload कर सकते हैं
मैंने अपनी machine पर एक drupal 8 logo पहले से ही downloaded और सेव कर लिया है
आपकी सहूलियत के लिए drupal 8 logo इस tutorial के webpage पर code files link में दिया गया है
कृपया इसे download करें और उपयोग करें
browse पर click करें और सेव की हुई image ढूँढें ध्यान दें जैसे ही हम इसे upload करते हैं drupal एक alternative text के लिए पूछता है जो आवश्यक है
छोटा लाल asterix दिखाता है कि यह अनिवार्य है
alternative text वो है जो screen पढ़ने वाले देखते हैं और नेत्रहीन लोग सुनते हैं और जो google को मिलता है जब वो हमारी site पर देखता है
type करें this is the drupal 8 logo अब save and publish पर click करें
हमने अभी अपनी नयी drupal site पर अपना सबसे पहला node बना लिया है
अब जब हम content पर click करते हैं तो node सूचीबद्ध होते हैं title content type इसे किसने बनाया node का status आखिरी update time
और कुछ operations जो हम कर सकते हैं जैसे edit delete आदि हम उनके बारे में जल्दी ही सीखेंगे
वह हमारी administrative toolbar में content है
administrative toolbar पर अगला link structure है अब उस पर click करते हैं
structure जहाँ हम drupal में अपनी site बनाते हैं यह site building कहलाता है
यहाँ कुछ चीज़ें हैंblock layout comment types contact forms content types display modes menus taxonomy views
ये विकल्प हमें बताते हैं कि हमारी अधिकतम site का निर्माण structure और content menu items में किया गया है
अभी के लिए block layout पर click करते हैं
हम अपनी theme पर आधारित अपनी site में विविध क्षेत्रों में blocks स्थित कर सकते हैं हम इसे ज़्यादा विस्तार में आगे cover करेंगे
custom block library पर click करें और एक welcome block जोड़ते हैं
add custom block पर click करें और टाइप करें welcome to drupalville
body में type करें welcome to drupalville this is where youll learn all about drupal!
कृपया ध्यान दें यह विषय वस्तु नहीं है blocks थोड़े से अलग और sidebars की तरह हो सकते हैं
अब save पर click करते हैं
हमारे पास हमारा block है और अब हम निश्चत कर सकते हैं कि इसे कहाँ रखना है
दोबारा block layout पर click करें sidebar first तक नीचे जाएँ और place block पर click करें
सारे blocks की popअप window जो हमारी drupal site पर स्थित kiye jane के लिए उपलब्ध हैं दिखती है
custom block welcome to drupalville पर जाएँ जो हमने बनाया फिर place block पर click करें
यहाँ कुछ प्रतिबन्ध हैं जो हम एक अन्य tutorial में सीखेंगे अभी के लिए save block पर click करें
अब अपने homepage पर जाते हैं और हमें welcome to drupalville दिखना चाहिए
अभी यह उस order में या उस स्थान पर नहीं भी हो सकता है जैसा हम चाहते हैं लेकिन वह ठीक है
यह structure menu item में site building प्रक्रिया का भाग है
अब administration toolbar पर अगले item पर click करते हैं जोकि appearance है
यह सारी themes का overview देता है जो हमारी drupal site के लिए उपलब्ध हैं यह updates check करने के लिए और global settings करने के लिये क्षमता भी देता है
अभी के लिए हम bartik के लिए settings पर click करते हैं
यह वो है जहाँ हम हमारी चुनी हुई theme के आधार पर हमारी site की दिखावट का प्रबंधन करेंगे
हम यहाँ कुछ अलग चुनकर bartik के लिए colour स्कीम अपडेट कर सकते हैं या खुद से manually रंग चुनकर भी कर सकते हैं
यह हमें प्रीव्यू देगा हम अपनी site पर इनमें से कुछ के लिए toggle the display भी कर सकते हैं
वापस ऊपर जाएँ और global settings पर click करें यहाँ हम अपनी site के लिए logo बदल सकते हैं इसे एक custom path देते या एक नया upload कर सकते हैं
क्या होता है यदि हम एक नया अपलोड किये बिना save पर click करते हैं
वापस अपनी site पर जाएँ और हम देखेंगे कि logo चला गया है
इसे दोबारा वापस लाने के लिए appearance पर फिर settings और global settings पर click करें use the default logo पर click करें और save configuration पर click करें
अब कोई बात नहीं कि हमारी site पर कितने पेज हैं हमारा logo सभी पेज पर दिखेगा
यह वो है जहाँ हम appearance टैब में अपनी drupal site के लिए themes का प्रबंधन करते हैं इसके साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं
इसे सारांशित करते हैं इस tutorial में हमने सीखा अपने drupal interface पर जाना
हमने menu items के बारे में भी सीखा
यह video acquia और ostraining से लिया गया है और spoken tutorial project आई आई टी बॉम्बे द्वरा संशोधित किया गया है
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं चलाती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें
spoken tutorial project nmeict मानव संसाधन विकास मंत्रालय और nvli संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है